दो टीन आदमी दिखाई दे रहें हैं और ऐें तालाब के चारों ओर हमें बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस साइड की शटर बंद दिखाई दे रही है दूसरी साइड की शटर हमें खुली हुई दिखाई दे रही है।

खिड़कियाँ हमें दिखाई दे रही है।

जिसपर लिखा हुआ है संयुक्त जिला कार्यालय भवन अ जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़--

यहाँ पर हमें दो टोटे दिखाई दे रहें हैं जो की पिंजरे में बंद दिख रहें है।